ब्रिज स्टोन बोलकर लिखा हुआ है और यहां पे टायर रुकाये हुए है जो यहां पेकाले कलर के बड़े-बड़े टावे--

तो यहां पे बैठने के लिए कुर्सियां है और यहां पे है कलर दिया गया --

रास्ता जाने के लिए और आसमान नीला नजर--

ब यहां पे गाड़ियां जाते हैंऔर यहां पे तालाब का पानी लीला दिख रहा है।

जो नीले कलर का है और यहां पे आसमान नीला नजर आ रहा है सूरज--

वो ग्रीन कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है पचली चेक कर रहा है।

दो ट्रक हैजो यहां पे पेट्रोल भरके लेके जा यहां पे दार रहे हैंऔर यहां पे आसमान मे बादल हैं।

और वहां पे ख़ंबा की तरह झाड़ नजर आ रहा है जो यहां पे--

अलग अलग बॉडी का यहाँ पे फेशियल और यहाँ पे है।

और यहां पे एक पोस्टर लिखा गया है प्रवान कि --

वैसे यहां पे चॉकलेटी कलर काले कलर में भी है।

और यहाँ पे हैटेबल के ऊपर ग्लासेज स्टील के और स्टील के मग रखे है।

और यहां पे बैग हैजो काली कलर की हैबिसलेरी की बॉटल्स है पीछे --

आसमान में थोड़े से बादल नज़र आ रहे है।

और यहां पे धूप भी दिख रही है साइड पे बिल्डिंग है जो बढ़ --

मक्की हैजो पीला कलर की है पानी हैयहा फव्वारा है।

यहां पे हैचक्री के जैसा एक है --

और यहां पे ओग्राम डेट टाइमिंग भी है।

यहां पे है लोग बैठे हुए हैं।

तो यहां पे दीवार हैवाइट कलर की--

और यहां पर दा पा रहा है एक यहां पे दो चेयर हैं वाइट कलर कि --

बैग रखा गया है टॉवल रखा गया है और यहां पे लाइट है फोकस है वाइट और टेबल पे यहां पे बिसलेरी की बॉटल है।

और मारुती - सुज़ूकी लिखा है धूप नजर आ रही है और यहां पे है एक टू व्हीलर उखा रुखीं भी है और यहां पे है--